यह सोफा सेट पांच जनों के बैठने का लिए कम्फ़र्टेबल है। इसमें एक जगह तीन और दो जगह अलग-अलग है।

और कुछ स्टेडियम में रनिंग कर रहे हैं और स्टेडियम बहुत अच्छ --